और बीच में एक कारपेट बिछा हुआ--

और कॉलेज एकदम साफ सुथरा है।

और बीच में कुछ लोग भी है।

साइड में एक ड्रम रखा हुआ है।

हा बहोत सुंदर साफ सुथरा मेडिकल है ये--

और रेस्टोरेंट के ऊपर बहोत सारे लाइट लगे हुएं--

और बीच में बहोत बड़ा मैदान है।

जीसमें बहुत सारे लाइट्स लगे हैं ट्यूबलाइट --

जिसके अंदर बहोत सारे कोल्ड ड्रिंक रखे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारा इक्विपमेंट्स रखा है।

और इस ईमेज में बहोत सारे कम्पनी का नाम लिखा है।

मैं एक इमेज को देख रहा हूं।

जिसके सामने चार चेयर रखे हुए हैं।

मैं एक इमेज को देख रहा हूं।

मैं एक इमेज को देख रहा हूं।

ये ईमेज किसी शोरूम की है।

मैं एक ईमेज को देख रहा हूं।